libreoffice base के इस spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे किः
अन्य data sources data sources को access कैसे करें
odb databases को पंजीकृत कैसे करें
data sources data sources को कैसे देखें
और data sources data sources को writer में इस्तेमाल कैसे करें
देखते हैं कि कैसे हम base में अन्य data sources data sources को access करते हैं
लिबरऑफिस base databases के अलावा अन्य data sources data sources को accessed करने की अनुमति data है
यह इनको अन्य लिबरऑफिस documents में जोड़ने की अनुमति भी देता है
उदाहरणस्वरुप हम spreadsheet या सरल text document को libreoffice के अंदर से access कर सकते हैं
और फिर इनको libreoffice writer document में जोड़ सकते हैं
उदाहरण के तौर पर libreoffice calc का इस्तेमाल करके एक उदाहरण spreadsheet बनाते हैं
start menu>> all programs पर click करें और libreoffice suite menu खोलें
या यदि libreoffice पहले से ही खुला है तो new spreadsheet खोलने के लिए हम file new और फिर spreadsheet पर click कर सकते हैं
अब spreadsheet में नमूने के तौर कुछ data type करें जैसा चित्र में दिखाया गया है
और इस spreadsheet को librarymembers के रूप में directory location में सेव करें
अब location को याद रखें क्योंकि बाद में हमें अपने उदाहरण में इस फाइल के उपयोग की आवश्यकता पड़ेगी
और हम calc window and कर देंगे
ठीक है अब देखते हैं कि हम इस spreadsheet को libreoffice base से कैसे access कर सकते हैं
यह करने के लिए या तो base को windows start menu से खोलें
या यदि libreoffice बेस पहले से ही खुला है तो हम file new और फिर database पर click करेंगे
अब यह database wizard खोलता है
यहाँ हम connect to an existing database पर click करेंगे
फिर ड्रॉपडाउन पर click करें
इस सूची में विभिन्न database sources database sources/sources पर ध्यान दीजिये जिनको base access कर सकता है
और हम यहाँ spreadsheet पर click करेंगे
और next button पर क्लिक करेंगे
अब browse button का इस्तेमाल करके spreadsheet को locate करें जहाँ हमने इसे पहले सेव किया था
यदि यहाँ spreadsheet के लिए कोई password है तो हमें इसे भी देना होगा
यहाँ हमें इसकी ज़रूरत नहीं है
next button पर click करें
अब spreadsheet को एक data source के रूप में पंजीकृत करते हैं
और इसको editing के लिए खोलें
और finish button पर click करें
अब यहाँ एक database name दें librarymembers type करें
save as type: पर ध्यान दीजिये यह odf database दर्शाता है जोकि हमारे case में odb है
और इसे उसी location में सेव करें जिसमें spreadsheet है
यहाँ हमने spreadsheet को base में data source के रूप में पंजीकृत कर लिया है
अब हम मुख्य base window में हैं
यहाँ बाएं panel में tables icon पर click करें
tables sheet1 sheet2 और sheet3 पर ध्यान दीजिये
sheet1 को खोलने के लिए इस पर double click करें और यहाँ spreadsheet का data है
अब spreadsheet को एक्सेस करने के इस तरीके से हम यहाँ कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं
यहाँ हम मौजूदा data पर आधारित केवल data देख सकते हैं या queries और reports बना सकते हैं
अतः बदलावों को सीधे spreadsheet में करना होगा
odb databases को पंजीकृत कर रहे हैं
अब यहाँ अन्य programs हैं जैसे openoffice org जोकि odb detabases now सकते हैं
इनको libreoffice base के अंदर इस्तेमाल करने के लिए हमें पहले इन्हें base में पंजीकृत करने की आवश्यकता है
किसी भी odb database को पंजीकृत करने के लिए हमें base खोलने की आवश्यकता है और
tools options libreoffice base और databases चुनें
registered databases के अंदर new पर click करें
browse करें कि database कहाँ located है और सुनिश्चित कर लें कि पंजीकृत name सही है
और ok button पर click करें
देखते हैं कि हम libreoffice में data sources कैसे let सकते हैं
इसके लिए spreadsheet का उदाहरण देखें जिसे हमने base में पंजीकृत किया था
अब हम इसे लिबर ऑफिस writer या calc में इस्तेमाल कर सकते हैं
उदाहरणस्वरुप देखते हैं कि इसे लिबर ऑफिस writer में कैसे देख सकते हैं
पहले base window से writer खोलें
इसके लिए file new और फिर text document पर click करें
अब हम writer window में हैं
मौजूद data sources को देखने के लिए हम सबसे ऊपर view menu पर click करेंगे और data sources पर click करेंगे
वैकल्पिक रूप से हम f4 बटन दबा सकते हैं
अब हम librarymembers सहित ऊपर बायीं तरफ पंजीकृत databases की एक सूची देखते हैं जिसे हमने अभी बनाया है
database देखने के लिए database name के बायीं तरफ plus चिह्न पर क्लिक करके हम इसे खोलेंगे
और हम tables खोलेंगे
यहाँ sheet12 और 3 है
sheet 1 पर click करें
अतः writer window के ऊपर दायीं तरफ हमारा data है
अब हम देखेंगे कि कैसे हम इस data को हमारे writer document में इस्तेमाल कर सकते हैं
ठीक है यहाँ यदि हम ऊपरी table से सारे data को इस्तेमाल करना चाहें तो पहले हम सभी records यहाँ चुनेंगे
इसके लिए पहले record के पहले column के बायीं तरफ gray cell पर click करें
फिर जब shift की दबाते हैं हम अंतिम record के पहले column के बायीं तरफ gray cell पर click करेंगे
ध्यान दीजिये कि सभी data चिह्नांकित हो गये हैं
अब हम नीचे writer document पर इसे click drag और drop करेंगे
फिर हम insert database columns शीर्षक का एक पॉपअप window देखते हैं
अतः यहाँ हम ऊपर table option पर click करेंगे
और फिर सभी fields को बायीं तरफ से दायीं सूची की तरफ खिसकाने के लिए double arrow button पर click करें
विभिन्न विकल्पों पर यहाँ ध्यान दीजिये
अभी के लिए हम केवल ok button पर click करेंगे
और यहाँ document में data का पूरा table है
आगे देखते हैं कि कैसे हम विशेष fields को जोड़ सकते हैं
writer document के ऊपर जायें और दो बार enter बटन दबायें फिर से ऊपर बायीं तरफ जायें
यहाँ member name colon type करें
और फिर ऊपर दायीं तरफ में data sources क्षेत्र में name column पर click करें
अब हम इसे हमारे टाइप किये हुए text के आगे click drag और drop करेंगे
और हम टैब की दबाएँगे और phone number colon type करेंगे
और हम जानते हैं कि क्या करना है नहीं जानते हैं
हम ऊपर से phone column को click और drag करेंगे और इसे अपने text के आगे drop करेंगे
फिर पहले record के बायीं तरफ gray cell पर क्लिक करके पहले record को चिह्नांकित करते हैं
और फिर हम data to fields icon पर click करेंगे
इसे formatting toolbar के नीचे table data toolbar के सबसे ऊपर पाया जा सकता है
ध्यान दीजिये कि ऊपरी table का data अब writer document में है
एक नया record लाने के लिए हमें केवल एक अलग record को चिह्नांकित करने की और फिर से data to fields icon को इस्तेमाल करने की आवश्यकता है
अतः यहाँ हमने सीखा कि data sources को libreoffice documents में कैसे इस्तेमाल करें
इसी के साथ हम libreoffice base में अन्य data sources को एक्सेस करने के इस tutorial की समाप्ति की ओर आ गये हैं
संक्षिप्त में हमने सीखा कि:
अन्य data sources को access कैसे करें
odb databases को पंजीकृत कैसे करें
data sources को कैसे देखें
और data sources को writer में इस्तेमाल कैसे करें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
यह project